यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर ग्रीन कलर के पर्दे लगे हुए हैं ऊपर की तरफ लाइटें लगी हुई हैं दो टेबल दिखाई दे रहे हैं।

जमीन दिखाई दे रही है उसमें--

खुला आसमान और हर तरफ धुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक मार्केट दिखाई दे रहा है मार्केट में एक दुकान दिखाई दे रहा--

एक लकड़ी का घर बना हुआ है जहां पर व्हाइट लाइटिंग की गई है।

यहां आप देख सकते हो कि एक मॉल जैसा दिखाई दे रहा है।